सामने एक बहोत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा हैं जिसमें बहोत सारी हरी-हरी घाँस लगी हुई हैं और हरे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक बड़ी से छत बन रही है जिसमे सेन्टीग लगी है इसमे लोहा बिछा हुआ है और बड़ा सा ग्राउन्ड दिखाई --

और ऊ ऊ जगह है जहाँ इटे रख्खी हैं | एक मोटरसाइकिल खड़ी है| रोड दिखाई दे रहा है।

सामने एक बड़ा सा पार्क दिखाई दे रहा है । जिसमे हरी घास लगी हुई है ।

सीढ़ियों के नीचे बहुत बड़ा ग्राउन्ड है जिसमें बहुत सारी हरी हरी घास लगी है और बड़े बड़े पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं ।

सामने एक बहोत बड़ी मल्टी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें सफेद रंग पुता है। नीचे बहोत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें गमले रखे --

एक बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमे एसी लाइट लगी है और अम्मम्म खिड़की लगी है और अम्म्म सीढ़ियां बनी हैं ऊपर जाने के लिए।

एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें बहुत सारी सजावट है हम्म फूल लगे हुए है फुग्गे लगे है बहुत सारी लाइट लगी है पंखे लगे है |